एक बंदे के हाथ में फोन है जो फोटो खींच रहा है।

ये डॉक्टर बी के कश्यप का क्लीनिक है ऐसा इन्होंने बोर्ड लगा रखा है।

और इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

टाइगर रिजर्व का यहां पर बोर्ड लगा हुआ है जो चेतावनी दे रहा है कि अंदर जाना सख्त मना है।

यहां पर बहोत सारे केबिंस हैं जहां पर लोगों को बिठाल के बाल कट किए जाते हैं।

यहां पर हरे भरे पौधे भी है और इस दफ्तर के ऊपर एक लैम्पलाइन लगी हुई है।

ये कुतुबमीनार जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और इसके ठीक सामने एक तालाब सा दिख रहा हैं।

दूसरी तरफ एक येलो कलर का लड़का खड़ा हुआ है जिसने इस टुकटुक को खरीदा है।

इस येलो मशीन के ऊपर दो झंडे लगे हुए हैं जो एक्चुअली इंडिया के ही होने चाहिए।

यह देखने में एक इंटर कॉलेज लग रहा है और यहां पर धूप भी काफी तेज हो रही है।

इस इंटर कॉलेज के आगे फ्रंट में पेड़ पौधे हैं।

ये एक कोट पैंट का शोरूम लग रहा है जहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है।

इस शोरूम में बहुत सारे कोट डिफरेंट डिफरेंट कलर के दिखाई दे रहे हैं।

ये एक स्मार्ट पार्क लग रहा है इस पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

जिसके बीच में एक छोटा सा टॉय रखा हुआ है गुड़िया का।

ये एक पार्क है यहां पर रेड कलर की कुटिया टाइप में है।

यहां पर जो गाइडर है वो अपने स्टूडेंट को सीख रहा है कि कैसे बैलून फोड़ते है।